बैलून लगी हुई है और बीच में हैप्पी बडडे लिखी हुई है।

इस तस्वीर में मुझे बहुत पुराना खंडर दिखाई दे रहा हैं।

इस तस्वीर में मुझे सब्जी की दुकान लग रही है जिसमें की बहोत सारे टमाटर--

मिर्ची भिंडी प्याज पड़ी हुई है और--

और एक चेयर है चेयर के ऊपर।

जिसमें की पहाड़ के चारों तरफ--

बीच में एक टेबल है और छत में--

इस तस्वीर में मुझे मंदिर दिखाई दे रही है।

दुकान के ऊपर बहोत बड़ा पोस्टर है। पोस्टर मे मै--

तीन चार बाइक और एक गाड़ी--

जिसमें की बारिश हो रही है।